यह एक शॉपिंग मॉल का एरिया है जिसमें ट्रॉलीज पड़ी हुई हैं और हाई अच्छा बना हुआ है और इसमें एक एल_सी_डी लगी हुई है।

ये एक प्यारा सा खूबसूरत सा दरिया है जिसमें एक कश्ती भी है और कबूतर भी हैं और इसकी दूसरी तरफ आबादी है।

ये बहुत वाटर सी पार्क है इसमें बैठने की जग की है इसमें बहुत ज्यादा दरख्त है हर तरफ --

ये एक पार्क है जिसमें स्पोर्ट वाले बच्चे खेल रहे हैं और इसपे एक लोहे अहह का रैक लगा हुआ है।